यह आपको दीवाल दिखाई पड़ रही है देखिए बहुत सारी वाईट देखिए अलमारी में आपको कुछ पेन टंगे हये है यहा पे सेलोटेप टंगे हुए है यहाँ पर देखिए आप को कुछ ग्लू रखे गये है कुछ कलर रखे गये है यहां पे बहुत सारे बुक्स दिखाई दे रही है।

यहां पे देखिए आप को बहुत सारी कार दिखाई पड़ रही है देखिये कार कुछ वाईट कलर की कुछ ब्लेक कलर की कार की दिखाई पड़ रही है यहां पे देखिये आप को --

यहा पे देखिये आप को ऐ दीवार में खिड़की में बहुत सारे फूलो की माला दिखया पड़े थी कुछ वाईट कलर की इसमें देखिये ये रेड कलर की--

यहाॅं पे देखिए झूले है यहाॅं पे कुछ पड़ी हुई है बड़े-बड़े पेड़ दिखाई पड़ रहे।

यहा पर देखिए आपको एक दुकान दिखाई पड़ रही है ऊपर साइड में धरा दिखाई पड़ रही है और यहा पे बहुत सारे सामान टंगे हुए हैं काउन्टर पे डिब्बे रखे हुए हैं और बहुत सारे बिस्किट्स टंगे हुए --

यहां पे देखिए आप को बस ये मशीन दिखाई पड रही है देखिए दो ओर है यहा पे।

यहाँ पर देखिये आपको बादल ऐसे एकदम हअ बादल दिखाई पड रहे है ये यहाँ पे आपको पानी की टंकी दिखाई पड़ रही कुछ बड़े-बड़े पेड दिखाई पड रहे है यहाँ पे देखिये वाइट कलर की लाइट जलती हुई देखाई दे रही है यहाँ पर देखिये पि घास दिखाई दे रही है घर भी दिखियो दे रहा है।

यहाँ पर देखिये आपको ये कुछ तार दिखाई पड़ रही बड़े-बड़ा सा एक मोटा सा आपको ये पाइप दिखाई पद रहा है कुछ मिटी पड़ी हुई है यहाँ पे सामने देखिये आपको कुछ मशीन दिखाई पड़ रही यहाँ पर देखिये कुछ आग ऐसी जलती हुई दिखाई देगी सामने से रौशनी अ--

यहा पे देखिये आप काउंटर दिखाई पड़ काउंटर आपको बोतल आपको दिखाई पड़ रही है यहा पे कुर्सी रखी हुई है एक दीवाल पर कुछ कैमरा लगे हुए है ये देखिये चेयर्स रखें हुई है यहाँ पर फ़ोन रखा हुआ है।

दिखाई सा दिखाई पड़ रहा है इसमें गोल्डेन कलर का यहाँ पे लाइट जल रहा है यहाँ पे देखिये--

यहा पर देखिये आपको ये बिल्डिग दिखाई दे पड़ रही ये बिल्डिग वाइट कलर की है इसमें देखिये बहुत सारी खिड़की लगी हुई है यहा पर देखिये अपको एक दिवार दिखाई पड़ र--